inkscape का उपयोग करके fill color and stroke पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ऊबंटु लिनक्स 1204 os
inkscape खोलें इसके लिए dash home पर जाएँ और type करें inkscape
आप logo पर क्लिक करके inkscape खोल सकते हैं
assignment svg file खोलें जिसे हमने पहले बनाया था मैंने इसे अपने documents folder में svg किया है
ये तीन आकृतियाँ हैं जिन्हें हमने पिछले नियत कार्य में बनाया था
याद करें कि हमने इंटरफैस के तल पर color palette का उपयोग करके रंग को बदलना सीखा था
अब हम सीखेंगे कि fill and stroke का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के रंगो को कैसे भरें
object menu पर जाएँ और drop down सूची से fill and stroke पर click करें
ध्यान दें कि fill and stroke dialog box इंटरफैस के दाईं ओर खुला है
यहाँ इस dialog box में 3 tabs हैंः fill stroke paint और stroke style
अब हम canvas क्षेत्र में आयत पर click करेंगे देखें कि fill and stroke dialog box में options और icons इनेबल होते हैं
पहले हम fill टैब के बारे में सीखेंगे
देखें कि यहाँ fill टैब के नीचे 6 icons हैं सीखते हैं कि ये icons क्या करते हैं
पहले icon को no paint कहते हैं यह दर्शाता है कि object किसी भी रंग से नहीं भरा जायेगा
icon पर click करें औऱ आयत में बदलाव को देखें आयत का रंग हट गया है
अगला icon flat color है यह object में solid रंग भरने में मदद करता है
flat color icon पर click करें और आयत की आकृति में रंग के बदलाव को देखें
flat color के नीचे देखें कि यहाँ 5 subtabs हैं
default rgb से rgb rgb चयनित है
rgb rgb के अंदर यहाँ 4 sliders हैं
पहले के 3 sliders लाल हरे और नीले रंगों की गहनता को दर्शाते हैं
हम इन sliders को दाईं या बाईं दिशा में we जाकर रंग बदलाव कर सकते हैं आयत में रंग के बदलाव को देखें जैसे मैंने किया
चौथा slider alpha slider है इसके साथ हम अपारदर्शिता से पारदर्शिता में रंग के opacity स्तर को घटा या बढा सकते हैं
जैसे ही मैं इन 4 sliders को move करती हूँ देखें कि इस boxes में दिखाये गए रंग की rgba values स्वतः ही बदलती है
मैं sliders को फिर से move करती हूँ ताकि आप इस बदवाल को let सकें
हम sliders के दाईं ओर पर boxes में प्रत्येक रंग की values को बदलकर रंग को स्वतः बदल सकते हैं
मैं लाल रंग की value 100 हरे को 50 और नीले रंग की value को 150 से बदलती हूँ देखें कि आयत का रंग अब बैंगनी में बदल गया है
मैं alpha के स्तर को 255 करती हूँ क्योंकि मैं opacity अपारदर्शिता के स्तर को कम नहीं करना चाहती
अगला टैब hsl है और यह क्रमशः hue saturation और lightness के लिए है
hue बुनियादी रंग के लिए hue का उपयोग कर सकते हैं मैं hue रंग के बुनियादी स्तर को प्राप्त करने के लिए slider को बाईं ओर we जाती hue
हम saturation slider का उपयोग करके बुनियादी रंग की परिपूर्णता को व्यवस्थित कर सकते हैं
slider को दाईं और बाईं ओर ले जाकर saturation स्तर में बदलाव को देखें
lightness slider बुनियादी रंग की चमक को व्यवस्थित करता है
इस option के साथ हम बुनियादी रंग की छाया को pure सफेद से pure काले या बीच में किसी भी छाया में बदल सकते हैं
पहले की तरह alpha slider का उपयोग अपारदर्शी से पारदर्शी करने के लिए opacity स्तर को घटाने या बढाने के लिए किया जाता है
अगला टैब cmyk है जो क्रमशः cyan magenta yellow और black को दर्शाता है
इन sliders को मूव करके हम बुनियादी रंग की तीव्रता या गहनता को घटा या बढा सकते हैं
यह color mixing option उपयोगी है जब डिजाइन projects वाणिज्यिक presses पर printed किये जाते हैं
अगला wheel टैब है यह hsl color mixer का एक वैकल्पिक रिप्रेजेंटेशन है
hue color ring पर क्लिक करके बुनियादी hue को चुन सकते हैं जो मानक color wheel पर आधारित है
तो मैं पीले रंग के बुनियादी स्तर को चुनने के लिए पीले रंग की छाया पर click करूँगी
रंग के circle के भीतर यहाँ इसके अंदर एक छोटे से वृत्त के साथ एक त्रिकोण है इस पर click करें और इसे त्रिकोण के अंदर drag करें और आयत में रंग के बदलाव को देखें
cms टैब केवल रंग प्रबंधित परिवेश में काम कर रहे लोगों के लिए है जो वास्तविक रूप से रूची रखेंगे
अभी के लिए हम इस टैब को छोड देंगे
फिर सीखते हैं कि linear gradient कैसे बनाते हैं
canvas पर जाएँ और वृत्त पर click करें
अब fill and stroke dialog box पर वापस आएँ और linear gradient icon पर click करें
वृत्त में gradient के भरने पर ध्यान दें
gradient यादृच्छिक संख्याओं की श्रृंखला के साथ name देगा
मेरे इंटरफैस में संख्या lineargradient3794 है आपके पास यह अलग हो सकता है
हम edit button पर क्लिक करके gradient को बदल सकते हैं जो linear gradient number button के दाईं तरफ नीचे की ओर है
gradient editor dialog box खोलेगा
इस box में सबसे ऊपर कुछ यादृच्छिक संख्याओं के बाद stop button है और इसमें drop down menu है
यदि आप इस drop down के arrows पर click करते हैं आप दो stop options देखेंगे
पहला pure बुनियादी रंग दर्शाता है दूसरा half checker board है जो दर्शाता है कि यह पारदर्शी है
दूसरे option को चुनें जो कि पारदर्शी stop option है
नीचे stop color पर जाएँ sliders को मूव करके rgb values को बदलें जिस रंग को आप चाहते हैं
gradient पूरी तरह से दिखने के लिए alpha value के रूप में 255 रखें gradient editor dialog box बंद करें
अब हम gradient angle को बदल सकते हैं ऐसा करने के लिए इंटरफैस के बाईं ओर पर tool box से node tool पर click करें यह selector tool के नीचे दाईं ओर है
यह वृत्त पर एक line को प्रदर्शित करेगा यह line gradient को दर्शाती है
ये इस समय वृत्त के arc handles और square handle के साथ overlap होते हैं
हमें gradient line handles को थोड़ा सा move कराना होगा ताकि हम handles अच्छे से देख सकें
जहाँ gradient शुरू और खत्म होते हैं वहाँ position बदलने के लिए circular handle या square handle पर click करें और drag करें
जैसा दिखाया गया है उस तरह से हम circular handle को मूव करके gradient की दिशा को भी बदल सकते हैं
अब सीखते हैं कि radial gradient का उपयोग कैसे करें icon पर click करें और वृत्त में gradient के बदलाव को देखें
radial gradient वृत्तीय आकार में बनता है
1 square handle और 2 circular handles पर ध्यान दें
gradient को शुरूवाती बिंदु से move करने के लिए मध्य square handle पर click करें मैं इसे नीचे बायीं ओर move करुँगी
gradient में बदलाव करने किए किसी भी circular handles पर click करें और drag करें
gradient के आकार की ऊँचाई और चौडा़ई में बदलाव को देखें
हम tool box में भी gradient tool पा सकते हैं
इस पर click करें और अपने वृत्त पर वापस आएँ
ध्यान दें कि cursor अब capital i के साथ plus चिन्ह में बदल गया है
अब वृत्त के अंदर कहीं भी click करें और drag करें gradient में बदलाव को देखें
अब वृत्त के बाहर कहीं भी click करें और drag करें
gradient में बदलाव को देखें
आगे हम सीखेंगे कि आकृतियों पर विभिन्न patterns को overlay कैसे करें
tool box पर जाएँ selector tool पर click करें और फिर star आकृति पर click करें
fill and stroke dialog box में pattern icon पर click करें ध्यान दें कि star का in stripe pattern में बदल गया है
यहाँ pattern fill में drop down menu है उपलब्ध patterns को देखने के लिए arrows पर click करें
checkerboard पर click करें और star आकृति में बदलाव देखें आप यहाँ दिखाए गए किसी भी उपलब्ध patterns का उपयोग कर सकते हैं
हम swatch के बारे में अन्य tutorial में सीखेंगे
unset paint नामक आखरी icon का उपयोग चयनित object को काले रंग में unset करने के लिए किया जाता है
icon पर click करें और star में रंग के बदलाव को देखें यह काले में बदल गया है
अब सीखते हैं कि एक object को stroke या outline कैसे दें ऐसा करने के लिए हमें stroke paint टैब का उपयोग करना होगा
tab stroke paint टैब पर click करें और आयत पर click करें
stroke paint टैब में icons fill टैब की तरह समान हैं
वे समान तरीके से कार्य करते हैं
पहले icon के साथ जो कि no paint है हम आकृति की outline को हटाते हैं
फिर हम flat color icon पर click करते हैं हम आयताकार आकृति के आसपास एक काले रंग की outline देखते हैं
हम stroke style टैब का उपयोग करके outline की मोटाई को घटा या बढा सकते हैं
width parameter 10 रखें हम अपनी आवश्यकतानुसार units को percentage प्वॉइंट्स में भी बदल सकते हैं
मैं unit pixels रखूँगी
वापस stroke paint rgb पर जाएँ हम rgb rgb में sliders को मूव करके stroke के रंग को बदल सकते हैं
outline में रंग के बदलाव को देखें जैसे मैंने किया है
खुद से अन्य flat color options देखें जैसे hsl cmyk wheel और cms
अब मैं linear gradient पर click करती हूँ यह आयताकार आकृति को gradient outline देता है
gradients जिन्हें हमने पहले उपयोग किया यहाँ drop down सूची में दिखाई देंगे हम उनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं
मैं मेरे आयत को लाल और नीला gradient outline देती हूँ
समान तरीके से हम शेष stroke icons का उपयोग कर सकते हैं और अपने objects को कुछ दिलचस्प patterns और gradient outlines दे सकते हैं
फिर हम stroke style के बारे में सीखेंगे इस पर click करें
हम पहले ही सीख चुके हैं कि stroke की चौडाई को कैसे बदलें
अब 3 join icons देखते हैं miter join round join और bevel join default रूप से stroke miter join में है
मैं अच्छी तरह से देखने के लिए आयत के किसी एक कोने पर zoomइन करती हूँ
अब stroke को गोल किनारा देने के लिए round join पर click करें stroke के किनारे में बदलावों को देखें
अब bevel किनारा बनाने के लिए bevel join option पर click करें
dashes drop down menu में विभिन्न dash patterns उपलब्ध हैं इनका उपयोग करके हम stroke को भिन्न dash patterns dash सकते हैं और भिन्न चौडाई भी dash सकते हैं
अगला cap option है यह बुनियादी तौर पर line strokes पर कार्य करता है
tool box पर जाएँ freehand tool पर click करें अतः freehand tool की मदद से एक line draw करें
अब line के अंत में zoomइन करें
default रूप से butt cap चयनित है और यह अंत में सीधा किनारा देता है
अब मैं गोल किनारा देने के लिए round cap पर click करती हूँ
अगला square cap है जो कि line के अंत में सीधा और विस्तारित किनारा देता है
dashes टैब के नीचे ये 3 markers हैं जो path के मध्य में markers रखते हैं
उपलब्ध सूची देखने के लिए marker के प्रत्येक drop down menu पर click करें
start markers में मैं torso चुनती हूँ
mid markers के रूप में हम curvein चुनेंगे
end marker के लिए हम legs चुनेंगे
canvas पर बने cartoon की आकृति को देखें
अंततः fill and stroke dialog box के तल में 2 sliders blur और opacity पर ध्यान दें
पहले आयत को फिर से चुनें
blur slider का उपयोग object को blur effect देने के लिए किया जाता है मैं slider पर click करूँगी और इसे दाईं ओर the जाऊँगी
देखें कि आयत ब्लर हो रहा है जैसे ही मैं slider को अधिक से अधिक दाईं ओर ले जाती हूँ
opacity slider का उपयोग आकृति को स्पष्टता देने के लिए किया जाता है slider को दाईं ओर move करें और आकृति में बदलावों में देखें
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
fill and stroke options का उपयोग करके objects में रंग भरना
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
1 5 pixels चौडाई के नीले stroke के साथ लाल और पीले रंग का linear gradient भरा हुआ एक पंचभुज बनाएँ
2 wavy pattern के साथ एक दीर्घवृत्त बनाएँ और opacity को 70% करें
3 start markers arrow1lstart और end markers tail के साथ 10 चौडाई वाली एक line बनाएँ
आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
अब हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है आई आई we बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद